इस तस्वीर में बहोत सारे पेड़ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और बहोत सारी वहाँ पत्थर की रेत दिखाई दे रही है और एक अ पत्थर की रेत के बीचों बीच जा --

और यही से और दोनों के साइड में एक दुकान दिखाई दे रहा --

एक जंगल दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा पेड़-पौधा दिखाई दे रहा है और पत्थर के बीचों-बीच पानी निकल रही है जो की झरने के जैसे और पत्थर दिखाई दे रहा है। जिस पर की --

यह इस तस्वीर में एक क्रिश्चियन का मंदिर दिखाई दे रहा है जोकि क्रिश्चियन के मंदिर है और वाइट कलर के मंदिर ऊपर में प्लस के निशान लगाए गए है। बहुत सारे लोग खड़े हैं।

और आसमान व्हाइट कलर की है और आसमान में चंदा मामा है और नाओ की कलर ब्लू कलर की की गई है।

इस तस्वीर में दो लोग दिखाई दे रहे हैं दोनों ग्रीन कलर की न्स् जैकेट पेहने हुए हैं और ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए हैं ब्लू कलर की पैंट पहने हुए हैं और वाइट कलर की दोनों ने टोपी पहनी हुई है और एक हां --

हमारा कोई व्हाइट ब्लू और कोई मेहंदी कलर का शर्ट पैंट के --

इस तस्वीर में बहुत बड़ा दो मंजिला घर है जोकि येल्लो रेड और ग्रीन कलर से कलर किया है।

बहुत सारी अ अ लकड़ी की लगी हुई है पट्टी और कुछ लोगों खड़े हैं और पीला-पीला आदमी बैठा हुआ है।